यहाँ पर ना हमें सामने एक कपडे की शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर हमें --

जहाँ पर पूल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें छोले टिकिया की शॉप दिखाई दे रही है।

और बड़े -बड़े तार भी दिख रहे है लाइट के ऊपर आसमान भी हमें नज़र आ रहा हैं।

यहाँ पर हमें एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

बड़ा पेड़ भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और सामने यहाँ पर बिल्डिंगे भी हमें दिखाई दे रहीं हैं।

जिन्होंने अलग-अलग कलर के ड्रेस पहन रखे हैं। पीछे यहाँ पर बलूंस डेकोरेशन हमे दिखाई दे रहा है।

हरी-हरी घांस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर हमे दिखाई दे रही हे कार दिखाई दे रही है घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारे चढ़ाव भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक जनरल स्टोर दिखाई दे रही है और ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है।